यहं तस्वीर एक क्राफ्टी किचेन एंड बेकर्स की है जहां पर बहुत सारे।

इसका जो ग्लास है वो काच का दिखाई दे रहा है। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

बाहर कुछ नील और लाल रंग के पोस्टर में गाइडलाइंस लिखी हुई है।

साथ में एक दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर एक आदमी लाल टी_शर्ट पेहने खड़ा हुआ हैं।

बीच में एक मंदिर अह मंदिर दिखाई दे रहा है यहां पे मां सरस्वती की फोटो दिखाई दे रही है।

टेबल प बेंच पर बैठे बहोत सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं नीचे जमीन पर घास भी उगी हुई दिखाई दे रही है।

और ऊपर लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है।

अह डेली खाने वाली चीजें नजर आ रही है कॉम्प्लान --

और उसके ऊपर एक काले रंग की मोटर रखी हुई है।